यहां पर ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं कुछ अह बारिश का मौसम है गड्ढे भरे हुए हैं एक कार अह एक ट्रक एक ट्रैक्टर भी है पीछे की तरफ पेड़ है बिजली के खंभे हैं एक बड़ा सा गेट है एक जे_सी_बी है।